पूल के अगल बगल बहोत सारे घर भी बने हुए हैं।

इस चित्र में जो दृश्य दिख रहा है वो वो स्विमिंग पूल का है।

जो बच्चा बैठा हुआ है हिप्पोपोटेमस के ऊपर और उसके बगल में --

ये इस तस्वीर में जो दृश्य दिख रहा है वो किसी पार्क का है।

बिल्डिंग के अगल बगल में हरियाली छाई हुई है।

इस होटल में बहोत सारे टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं।

कुर्सी और टेबल भी रखा हुआ है।

इसके ऊपर एक कार्टून में बहुत सारी चीज रखी हुई है।

एक यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया का एक शाखा है।

यहां पे एक गार्ड खड़ा है ब्लू कलर के कपड़ा पहने हुए और इसके सामने बहोत सारे मोटरसाइकिल वाहन खड़े हैं।

इस साइबर कैफे में चार कंप्यूटर लगे हुए हैं।

कंप्यूटर के पास में दो दो चेयर भी तीन चेयर भी लगे हुए हैं।

यहां पे एक बच्चे का बाल काटा जा रहा है।

यहां पे बहोत सारी लाइट भी लगी हुई है।